बादल उमड़ा-उमड़ा जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है बारिश होने वाली है। बिलकुल --

सिविल इंजीनियरिंग लिखा है कॉलेज --

और वे खरीद रहे हैं मछली खाने के लिए मछली खाते हैं लोग ज्यादातर न।

आई.टी.आई. है। आई.आई.टी. है जो लड़के करते हैं उन्हीं के लिए हैं। ये आई.टी.आई. पढ़ते हैं। टीचरें एक खड़े हैं। बच्चे भी खड़े हैं।

यहाँ बहोत अच्छेस कम दाम में मिल जाता है इसमें ह-म-म सस्ता मिलता है ना इसमें इसलिए लोग सस्ता में खोजा --

सामान लीजिये सामान खरीदिए यहाँ पे सब मसाला है।

हम्म्म फर्स्ट क्लास बहौत कपड़े हैं।

हम्म कोई स्कूल स्कूल होगा। लोग आते जाते होंगे। पढ़ते लिखते होंगे। पढ़ने लिखने के लिए ही तो बन --